चित्र के अन्दर हमें प्रकृति का दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ काले रंग का काफी फैला हुआ दिखाई दे रहा हैं। पहाड़ पर हरे-हरे --

चित्र के अन्दर हमें कई बहुत खूबसूरत सी छत का नजारा दिखाई दे रहा है जिसकी दीवारें साइड बड़ी सफ़ेद रंग की डिजाईन करी हुई पीले हरे लाल रंग के गुम्बद बने हुए है।

चित्र के अन्दर हमें एक ग्राउंड दिखा एक लाल रंग का कुछ दिख रहा है पहाड़ दिखाई दे रहें है कुछ सारे मिट्टियाँ दिखाई दे रही है।

यक तना पेड़ों का दिखाई दे रहा है कुछ सामान ईटे पड़ी हुई गाड़ी के सामने का हिस्सा दिख रोड जाता हुआ दिख रहा पत्तियां भी पेड़ों की दिखाई दे रही है।

गुच्छे के गुच्छे दिखाई दे रहें है कुछ पत्थर दिखाई दे रहें है जो पीले रंग के जिसमें पानी बहता हुआ दिख रहा है। पानी चलता हुआ हलका काले रंग का दिखाई दे रहा है।

अगले कमरे में अलमारी सफेद रंग की बनी हुई दिखी फर्श चमकते हुए दिखाई दे रही पिलर जाती --

कुछ बड़ा सारा पेड़ का गुच्छा दिखाई दे रहा हैहरी-भरी घासों का मैदान दिखाई दे रहा हैआसमान सफेद-कला दिख रहा है।